यह फोटो किसी दरवाजे का लिया गया है।

कांच द्वारा बने हुए हैं।

यह हाल काफी सुंदर और साफ हैं।

तथा फोटो मे जे_सी_बी या क्रेन मशीन --

जिन्हें साधने के लिए लगाए गए हैं।

काफी बाहर बैठने के लिए खड़े हुए हैं।

इस पार इंतजार कर रहे है।

सफेद कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यह कॉलेज रेड कलर का है।

एक बच्चा जो अपने बाल कटवा रहा है तथा दो लोग--

एक मैम जो बच्चों को डांस सिखा रही हैं।

जो यहां फोटो दोपहर के समय का है।

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।